साड़ी खरीदने के लिये ओरत आयी हुई है यहाँ पे।

यह एक स्टेज है यहाँ पे स्कूल फंक्शनस चल रही है।

खेलते भी हैं। पढ़ाई भी करते हैं।

यह एक गुफा है। यह गुफा --

यहाँ पे नाई बाल दाढ़ी काटते हैं। यह सैलून --

घूमने के लिए आये हुए हैं।